इधर पूरा नीचे एक पक्का का जमीन भी पूरा है और यहां पर ये आदमी के हाथ में फोन है।

इस चित्र में मुझे ये बड़ा टेबल दिख रहा है जिसमें एक मशीन रखा हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा भी है।

यहां कुछ आदमी लोग हैं जो चेयर में बैठे हुए है और टेबल भी लगाया हुआ है।

ऊपर बस में कलर भी का बहुत सारी बस वाले ने तरह तरह से कलर किया हुआ है।

इधर घर भी है और उधर बड़ा खंभा भी इसमें तार लगा हुआ है।

यहां पे काफी सारा समान भी रखा हुआ है।

बड़ी बड़ी खिड़कियां भी है और यहां पूरा टाइल्स लगा हुआ है।

इस घर के बाहर एक बड़ा गेट भी लगा हुआ है और अंदर भी काफी सारे कुर्सी समान दिख रहा है।

बाहर में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

ये किसी रूम का चित्र है।

उस ग्राउंड में बहोत सारा पेड़ पौधा और झाड़ लगा हुआ है।

बहुत सारा बांस भी रखा हुआ है और समुद्री किनारे में बहुत सारा पेड़ भी दिख रहा है|

पीछे पूरा टाइल्स भी लगा हुआ है।

यहां पर ये कठपुतली मे कपड़ा पहनाया हुआ है।

और एक खिड़की से धूप की किरणे आ रही हैं।

हॉल में बहोत सारा चेयर लगाया हुआ है।

जब बहोत सारा लाइट भी लगाया हुआ है और यहां पे काफी सारे लोग है।

उधर स्टेज बनाया हुआ है जिसपे बड़ा सा चेयर लगाया हुआ--

ये एक पहाड़ का चित्र और--

यहां पर ऊपर अलमारी भी दिया हुआ है।

यहाँ ये बड़ा बड़ा घर दिख रहा है।

यहां पर बोतल में पानी भी रखा हुआ है टेबल में और एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है।